यह कंस्ट्रक्शन साइट चल ये कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है।

और शटरिंग हो गया है। नीचे गिट्टी मोरंग बालू सारा चीज बिखरा हुआ है।

और कंस्ट्रक्शन की साइड है यह।

बहुत पुराना मंदिर टाइप का लग रहा है।